यहां कुछ मुख्य बातें भी हो रहे--

दोनों लोग ए_टी_म यूस कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं या किसी शायद समस्या के बारे में बात कर रहे हैं।